और यहां पे एक रंगीन कारपेट भी लगाया हुआ है यहां पे कई लोग निचे बैठे हुए हैं और कई लोग कुर्सियां पे बैठे हुए है ।

सब ने मास्क पहना हुआ है और पिपिक किट भी पहनी हुई दिखाई दे रही है सब फोटो खींचा रहे है।

यह एक पुस्तक भंडार की दुकान हैं जहाँ पे कई प्रकार के पुस्तके बेचीं जा रहे हैं बाहर कैरमबोर्ड भी लगा हुआ हैं इस दुकान के उपर भी एक दुकान दिखाई दे रही हैं जिसका शटर अभी बंद हैं।

यहाँ पे बहुत सी प्रकार की मछलियाँ रखी गई हैं जो की यहाँ पे बेचीं जा रही हैं पीछे दो लड़के खड़े हैं जो कि मछलियों को बेच रहे हैं यहाँ पे लाइट लगाई हुई हैं।

यहाँ पे दोआदमी बैठे हुए हैं जिन के पीछे कई प्रकार की पपुस्तके के रखी गई हैं ये एक इस मे से एक आदमी ने चश्मा पहना हुआ हैं और एक आदमि ने वाईट कलर का शर्ट जो चेकक्स मे हैं वह पहना हुआ हैं।

इसके सामने एक वाईट कलर की बस दिखाई दे रही है जिसके सामने एक पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है और बाहर कई प्रका कई लोग खड़े हुये है बस के उपर भी कई लोग बैठे हुये हैं।

बच्चों के पीछे जो दीवाले है उसका कलर गुलाबी है दीवाल के ऊपर जाली लगी हुई है।